ये देखिए कितने खूबसूरत दो पक्षी है ये जोड़ा है इनका और --

और उधर पहाड़ियां है कितने खूबसूरत ये लग रही है और ये जो व्यू है बिलकुल शांत लग रहा है। इसमें कितना अच्छा महसूस होगा अगर कोई जा --

और अपने फेस वगैरह पर मसाज वगैरह कराते हैं। ये जो बारबर है। ये हमारे हेल्परस हैं और ये काफ़ी अच्छे से मेहनत करते हैं।

बहुत ही बढ़िया ऑटो जो है हर किसी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते है।

और मिरर आप देख रहे सामने वाले वाल पर अ कितना सुन्दर देख कर मतलब लग रहा है ।

ये देखिये कितना सुन्दर व्यू है आप देख रहे है खुला आसमान है खेत है और खेत आस पास में छाव है जब फसल कटी जाती है तब इस छाव की बहुत ज़रूरत होती है काफ़ी एन्जॉय करने वाला टाइम होता है बहुत मज़ा आता है जब फसल काट के --

जंगल है काफी घना जंगल ये देखने में लग रहा है और काफी सारी पत्ती नीचे गिरी हुई हैं।

ये देखिए ये जो हरियाली है कितनी सुन्दर ये लग रही है। इसका कलर मतलब इतना शानदार मुझे लग रहा ना देख के कि आँखों को बड़ा सुकून सा इसे देखने के बाद मिल रहा है।